मुझे इधर एक दीवार दिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रही है।

इधर मुझे सड़क दिखाई दे रही है।

मुझे इधर काफी सारे डमरू भी नजर आ रही है।

वाटर पार्क में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर काफी सारे वाइंस बोतल भी नजर आ रही है।

इधर मुझे दो लाइट बल्ब भी नजर आ रही है।

घर के बाहर फेंसिंग लगे हुए भी नजर आ रही है।

घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ मुझे नजर आ रही है।

मुझे इधर एक कैलेंडर भी दिखाई दे रही है।

इधर मुझे एक मूर्तियों की दुकान दिखाई दे रही है।

इधर मुझे काफी सारे छोटे छोटे कपबोर्ड्स भी दिखाई दे रही है।

और पंप के सामने मुझे दो इंसान खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इधर एक बरा सा शॉपिंग कंपलेक्स नजर आ रही है।

काफी सारे बाईक्स और स्कूटी खरे हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इधर एक रूम दिखाई दे रही है रूम के अंदर मुझे एक बिस्तर दिखाई दे रही है।

मुझे रूम के खिड़की भी नजर आ रही हैं रूम के अंदर मुझे एक लाइट बल्ब भी नजर आ रही है।

नदी के आसपास मुझे काफी सारे बड़े बड़े पत्थर भी नजर आ रही है।

मुझे इधर छोटी छोटी सी घास भी दिखाई दे रही है।

एक मोटरसाइकिल पर इंसान बैठे हुए भी नजर आ रही है।

मुझे इधर एक आकाश में रस्सी लटकते हुए भी नजर आ रही है।

इधर एक बच्चे की कार भी नजर आ रही है।

मुझे इधर एक मशीन की सीढ़ियां भी नजर आ रही है।

मुझे इधर आधा कच्चा आधा पक्का घर दिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक खुला मैदान दिखाई दे रही है।

इधर मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

रिसेप्शन के सामने मुझे एक इंसान बैठे हुए भी नजर आ रही है।

पीछे मुझे काफी सारे सामान भी नजर आ रहे हैं।